जीशी के गेट लगे हुए हैं।

इस फोटो में आसमान दिख रहा है।

साथ में वहां दरवाजे रहे हैं।

'यह फोटो में सामने'--

बाइक की सीट नीचे पड़ी हुई है साथ में औजार पड़े हुए हैं।

दीवार का रंग सफेद है ऊपर बोर्ड भी लगे हुए हैं सफेद--

सामने एक काल रंग का बोर्ड लगा हुआ है।

सामने उसके पीछे ऑरेंज कलर के कपड़े में एक व्यक्ति चलता हुआ दिख रहा है।

फोटो में कई सारे लोग--

इस इमेज में सामने एक राशन की दुकान है।

दुकान में अरोरा बू दिखाई दे रहा है बोत में लिखा हुआ--

नीचे टाइल्स सफेद रंग की है और सामने बहुत सारे पर्दे लगे हुए हैं।

फोटो में दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैंजप्पलों में--

यह एक स्टोर हैजहां पर सामान--

बर्गर की सेट रखी हुई है।

वो टेबल में शीशे लगे हुए हैं।